पार्क में बच्चे झूला झूल रहें हैं हमने बड़ी मस्ती की थी बचपन में झूला झूलते हुए।

अरे ये क्या है ? ये है तो अलग ही पौधे आई थिंक मुझे लग रहा है ये या तो वो है या तो हल्दी के पौधों में अमरूद लटकाया हुआ है | ये भाई साहब कोशिश कर रहे है कि अमरूद इन्ही पेड़ो पर उग जाए।

ये दीदी जी खड़ी हैं कुर्ती प्लाज़ो पहन के इंडियन वियर ड्रेस है और काफ़ी अच्छा है और एकदम कम्फर्ट कम्फर्टेबले होता है डालो और चले जाओ मार्केट वार्केट जहाँ भी जाना है।